यहां पर एक बड़ा सा गेट बना हुआ है जो बोहोत ही जिसपर कुछ लिखा हुआ है एक जीप वहां से जा रही है उसपे खाकी कलर का कवर चढ़ा हुआ है उसपे दो चक्के लगे हुए हैं।

बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर एक स्टार भी दिखाई दे रहा है और ब्लैक कलर की टी शर्ट पहने हुए एक लड़का दिखाई दे रहा है यहाँ पे लकड़ी की चेयर --

यहां पर दो आदमी खड़े हुए है एक ने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहना हुआ है और--

यहाँ पर ऊपर एक विंडो खुली हुई दिख रही है नीचे ऑरेंज कलर का कुछ बना हुआ है और एक आदमी अपनी बाईक पर बैठा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारे रेड कलर के रेपर पड़े हुए हैं नीचे येलो कलर का रेपर भी दिखाई दे रहा है एक आदमी के हाथ में ब्लू पेन हैं एक आदमी के ह--